स सजावट भी बहुत --

ई साफ सुथरा दिख रहा है ।

और बहुत साल दिख रहा है।

मस्जिद हैं मस्जिद में लोग आये हैं।

इ कौनो बॉंध छे पानी-उनी छोड़े जाए छे ।

और बहुत सुंदर लगई छई जो की बहुत अच्छा है खाना नीला कलर का ठीक से बनावल गइल छई

और बैंक ऑफ बड़ौदा के अमकमिंग कुछ --